यहां एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

है और एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है इधर-उधर बहुत से लोग दिखाई दे रहे --

यहां एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा--

एक लाइट दिखाई दे रही है।

जो बहुत ही अजीब सा दिखने में लग रहा है।

कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं एक सोलर लाइट दिखाई--

जिसकी दीवार ईंटों की तरह दिखाई दे रही--

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

और कुछ पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं।

जली हुई दिखाई दे रही है साथ में एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

है और एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

एक आदमी सामने दिख रहा है।

जहां पर एक सोफा दिखाया गया है और--

गई है जहां पर एक झूमर लगा हुआ दिख रहा है।

दिख रहा है कुछ गाड़ियां और ट्रक चलते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

है एक आसमान दिखाई दे रहा है।

लगाए गए हैं बलून का रंग--

खिड़कियां दिखाई दे रही--

है और जिम का सामान दिखाई दे रहा--

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहां पर--

यह एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर--

यहां पर एक लड़की दिखाई दे रही है और--

यहां पर बहोत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग --

दे रहे हैं लाइट दिखाई दे रही है।

टॉय की दुकान दिखाई दे रही है।

जाते हुए दिख रहा है एक बैनर दिख रहा है।